जिसमें दो आदमी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और कुस लोग गेट पर खड़े हुए --

चर्च का निशान भी दिखाई दे रहा है।

जिसका कलर लाल रंग का है।

जहाँ पे दो रिक्शे खड़े हुए हैं जिनको बहोत अच्छी तरीके से सजाया गया है।

जहां पे बोहो ढेर सारे बैलून --

इस तस्वीर में एक आदमी प्रे --